एक चौराहा जिसके पास में एक बड़ा सा होर्डिंग बोर्ड मां गौरी मेमोरियल मेंडिकल एंड लाईफ सेवा केंद्र --

एक बड़ा सुपर मार्केट जहां श्री मनपसंद सुपर मार्केट के आस-पास कुछ बैलून्स लगे हैं जिसमें से कुछ व्हाइट बैलून्स --

एक उद्यान के बगल में बहुत सारे गाड़ियां रखी गई है उद्यान के आस-पास घास के मैदान है उद्यान के चारों ओर बड़े पेड़-पौधे लगाए गए है।

शाॅप के समाने कुछ गाडियाँ खड़ी हुई हैं।